दिख रहा है लिखा हुआ है बाहर अमूल डेरी की काफी बास्केट पड़ी हुई है।

छोटे बच्चे बाहर चपल पहने खड़े है और अंदर एक चैयर पर महाराज बैठे है।

ए होमवर्क करते हुए बच्चे स्टूडेंट --

मुझे यहाँ काफी बड़ा सा एक होटल दिख रहा है जिसमे ब्लैक कलर की चेर और ब्लैक कलर का टेबल --

ये प्लांट हाउस दिख रहा है जिसमें रोज के और मेन तो फ्लावर के पूरे प्लांट --

छपरे लगे हुए हैं जो ब्लू और वाइट में है और बीचों-बीच प्लेटफॉर्म है।

और नीचे का पार्ट मुझे पटरियां दिख रही हैं।

मुझे यहाँ पे पब्लिक --

मुझे यहाँ पे केटलिक का चर्च दिख रहा है मुझे चर्च के बाहर--

कैंडल्स लगी हुई दिखाई दे रही है और पब्लिक --

काफी अंदर जाते और रिटर्न आते नजर आ रहे है।

दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक--

अरे वो ब्लू कलर की है।

मंडप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे--

बंध होती हैजाली लगी होती है उसमे जाली लगी हुई है।

मुझे एक यहाँ पर लोकल रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

एक पार्किंग दिखाई दे रही है।

अरे प्लेटफार्म दिख रहा है।

मुझे यहाँ पे रिसेप्शन --

और दो पैर नजर आ रहे है।

राधा कृष्ण है माँ कालिका--

मुझे ये एक अंदर स्कूल का सीन दिखाई दे रहा है जिसमें--

और उसमे रूम के बहार क्लास वन क्लास टू लिखा दिख रहा है।

सब नजर आ रही है जिसमे कुकिंग वैरायटी की बुक्स है।

जिसमे एक्सेस बैंक बैनर दिख रहा है।

मुझे यहा डूबता हुआ सन मतलब सनसेट नजर --

शाम का नेचरल व्यू दिख रहा है जिसमे --

बस लिखा हुआ है अशोक--

ब्रिज का डाउन वाला एरिया में मुझे एक नदी बाजू में दिख रही है और--

जिसमें कारें ग्रे कलर की है।

मुझे यहा पर एक किचन दिख रहा है किचन में सिलिन्डर --

कास्ट वालो को प्रेयर करवाते उनको नजर आ रहे--

शॉप दिख रहा है जिसमे कनक्या--

ऐसा करके बैनर पे नजर आ रहा है।

बीच में सीढ़ी है --

सीढ़ी है और सामने जाते ही मंदिर--